यहा पर ज़्यादातर गाड़िया व्हाइट कलर की है और एक दो गाडी रेड कलर की भी है ये और यहा आसपास कुछ बिल्डिंग बनी हुई है कुछ पेड और पौधे लगे हुए हेंगे यहा पर।

और दो स्यून है जो की ब्लाक कलर के है और ट्रे मे ट्रे के साइड मे कुछ र्यापर रखे हुए है और यहा पर एक चावी रखी हुई है साइड मे।

और इस दाहो पर किनारो पर गमले रखे हुए है पेड़ लगे हुए है और यहाँ पर पेड़ के किनारे पर ग्रिल लगी हुई है।

ए यहा पे काफी सारा समान रखा हुआ है अलमारी मे यहा पर टेबल है जिसके ऊपर समान रखा हुआ है।